ये एक गाड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है और ये गाड़ी के ऊपर के हिस्से को लोगों ने खोल लिया है और ये गाड़ी के मिस्त्री के पास कई सारे अगल बगल --

और इस दुकान पे कई सारे लोग सिगरेट और चाय वगैरह भी पीने आते हैं। इस दुकान पे भीड़ ही लगी रहती है।

ए ये मजदूर अपना काम कर ए मजदुर --